इस दृश्य में एक रोड दिख रहा है जिसका कलर ब्लैक है।

एक मैदान है यहां पे बहोत सारे छोटे बड़े हरे भरे पेड़ पौधे है।

बगल में एक नीला कलर का टूल भी है और एक छोटा सा रेड कलर का टूल है।

बगल में एक वाइट कलर का काउंटर है ऊपर में दो लाइट लगे हुए हैं।

एक पोस्टर छपा भी रहा है जो शादी के हैं।

येलो कलर का भी दिया हुआ है।

घर का रंग व्हाइट है और रेड और ऊपर में ब्राउन है।

उसके अंदर बहुत सारे पोस्टर छोटे छोटे टंगे हुए हैं।

नीचे छोटे छोटे बॉक्स भी बनाए हुए हैं जिसके अंदर पैसा या सामान रखा जाता है।

बहुत सारे व्यक्ति नहा रहे हैं और कुछ व्यक्ति स्कूटी और बाइक्स भी धो रहे हैं।

बगल में एक येलो कलर का घर भी है।

बोट पर मशीन लगाया हुआ है बहुत सारे अगल बगल पत्थर भी हैं।

एक चेयर जैसा बनाया हुआ चीज रखा हुआ है।

बगल में कूड़ेदान है और एक बगल में बाइक का टायर आधा दिख रहा है।

ऊपर में एक बड़ा सा वृक्ष भी है।

एक घर जैसा बनाया हुआ है जिसका कलर रेड है।

ऊपर में एक फैन लगा हुआ है और बगल में दो खिड़कियां है।

बगल में हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

आसमान में बादल दिख रहे हैं आसमान का कलर नीला है।

एक गदा भी रखा हुआ है रूम का कलर व्हाइट है।

व्हाइट कलर के लाइट भी लगे हुए हैं।

बगल में मकान भी दिख रहा है जिसका कलर पिंक --

इस दृश्य में बहुत सारे साइकिल और बाइक्स लगे हुए हैं।